और लोग भी नजर आ रहे हैं चलते हुए --

इस तस्वीर में एक टेबल रखा हुआ है जिस पर एक इस्टील का जग और गिलास रखा है।

छत पर हमें टाइल्स दिखाई दे रहे हैं।

लाल नीले अ सफेद और पीले रंग के बैलून हैं।

दरवाजा काँच का लगा नजर आ र --

और हमें ऊपर दो केक रखे नजर आ रहे हैं।

सड़क दिखाई दे रही है और उस पर एक आदमी जा रहा है ।

हमें तस्वीर में मूर्तियाँ दिखाई दे रही हैं बनी हुई।

सफेद हरी और पीले रंग की अ पेंट की हुई है।

ऊपर सफेद आसमान दिखाई दे रहा है।

अंदर पेड़ हमें हरे हरे दिखाई दे रहे हैं और सफेद एक मकान बना है।

तस्वीर के अंदर हमें सड़क दिखाई दे रही है और सूरज हमें आसमान में दिखाई दे रहा है लाल लाल--

और एक जगह एक पैकेट टंगे हुए हैं।

और हमें नजर आ रहे हैं बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं।

हरे लाल काले सफेद गमले हैं।

तस्वीर में हमें स्टेज बना दिखाई दे रहा है काले पर्दे लगे हैं और पोस्टर हमें रखे हुए नजर आ रहे हैं।

हमें नीला बोर्ड दिखाई दे रहा है जिस पर गोवाहाटी यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल लिखा हुआ है।

एक शटल लगाया वहाँ एक महिला खड़ी हुई है।

इस तस्वीर में एक हाथ हमें दिखाई दे रहा है एक आदमी सफेद शर्ट में गाड़ी में काम कर रहा है।

ऊपर यूनियन बैंक का बोर्ड लगा है लाल --

ऊपर सफेद आसमान है हरे हरे पेड़ लगे हैं।

और एक सामने भी गोला बना नजर आ रा है पत्थर का --